और इस रूम में बहुत सारी खिड़कियां हैं।

उनमें सामने एक पिलर है बड़ा सा।

सीलिंग का रंग सफेद है।

नीचे सामने दो कुर्सी है।

और नीचे बहोत सारे बैकग्राउंड रखे हैं।

स फोटो में एक दुकान है।

उसमें एक लकड़ी से बना छोटा सा मंदिर है।

इस फोटो में एक बड़ा सा सुपरमार्ट है।

जहां बहोत सारे बड़े-बड़े लकड़ी से बने रैक रखे हुए हैं और बहोत सारे स्टैंड रखे हुए हैं।

इस फोटो में सामने एक रोड है।

रोड के किनारे एक बड़ा सा तालाब है।

हाईवा का रंग सफेद और नीला है।

सामने बड़ा सा जमीन है और रास्ता है।

उसके ऊपर एक सेंटेंस लगा है।

इस फोटो में बहुत सारे दुकान है सामने एक दुकान है।

जहां की आगे से रेलिंग लगा है पीछे से भी रेलिंग लगा है जो कि स्टील का है।

बहोत सारे कुर्सियां है जो कि स्टील का है।

सामने एक काउंटर है और दीवाल और गेट हैं।

ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है।

जिसमे आगे रैक जैसा लगा है जो कि दीवाल पर टंगा है।

इस फोटो में एक बड़ा सा रूम है।

इन पर बहोत सारे डब्बे रखे हैं।

जो कि नीले और सफेद रंग का टीशर्ट पहना--

नीले रंग का एक जींस पहना है।